ये जो फोटो है पहाड़ी एरिया का है इसमे लोग आस-पास मे बहुत बड़े-बड़े पहाड़ दिख रहा है और धुवाँ दिख रहा है।

यहाँ एक मंदिर है। मंदिर रेड कलर का हैइसके ऊपर गुंबद है। मंदिर मै लगा हुआ है गेट भी सजा हुआ है दो लाइट भी है।